इसके अंदर बहुत सी कुर्सियां और टेबल रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और पियानो बहोत से समान दिखाई दे रहे हैं।

खिड़कियों से अंदर को बहुत सी रोशनी आ रही है।

बीच से रेड कलर कि टाट बिछाई हुई है।

यहाँ पर मुझे एक फादर की शॉप दिखाई दे रही है।

यहां एक बेकरी की शॉप दिखाई दे रही है।

यहाँ पर बाहर बहुत सी बाइक्स और स्कूटी लगी हुई है।

इसमें बड़े-बड़े शीशे भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर मुझे बहोत बड़ी बड़ी बसे दिखाई दे रही हैं।

सामने से सड़क दिखाई दे रही है।

किचन में बहुत सा सामान नजर आ रहा है।

यहां पर मुझे शूज़ भी दिखाई दे रहे हैं।

जो अलग अलग कलर के दिखाई दे रहे हैं।

पीछे मुझे ज्वेलरी भी दिखाई दे रही है।

यहाँ पर मुझे एक कुर्सी भी नजर आ रही है।

यहाँ पर मुझे बहुत सी शॉप नजर आ रही है।

यहाँ अलग-अलग शॉप है।

शॉप्स के आगे सड़क भी दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर मुझे बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें दिखाई दे रही है।

बिल्डिंग अंदर से मुझे बहुत ही सी रोशनी नजर आ रही है।

यहाँ पर मुझे एक शॉप दिखाई दे रही है।

वहां पर शीशे लगे हुए नजर आ रहे हैं।

यहाँ पर मुझे बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

इसकी दीवारों का रंग पीला और रेड दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे बहोत बड़ी शॉप दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पर मुझे बहुत बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है।

कुर्सियों के ऊपर बहुत से व्यक्ति बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

एक बहुत बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है।

इसके साथ में एक टेबल भी नजर आ रही है।

यहाँ एक व्यक्ति मोबाइल में बात--

साइकिल रेड और ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है।

और यहां से एक सड़क भी नजर आ रही है।

इसके अंदर बहोत सी खिड़कियां भी दिखाई दे रही है।

बरे पहाड़ियों के बीच घर नजर आ रहे हैं।

इसके साथ में मुझे दो तीन बड़े बड़े घर दिखाई दे रहे हैं।

आगे एक छोटा सा बॉय खड़ा है।

यहां एक टी_वी की शॉप नजर आ रही है।

यहां पर मुझे बहुत पुरानी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

बहुत सब कुछ पुराना दिखाई दे रहा है।

इसका कलर थोड़ा ब्लैक नजर आ रहा है।

यहाँ पर मुझे खूबसूरत सा बेडरूम दिखाई दे रहा है।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

यहां पर मुझे बहोत बड़ा पियानो दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।

यहाँ पिंक और वाइट कलर की दिखाई दे रही है।

पीछे एक बहुत बड़ा पेड़ नजर आ रहा है।

बहुत से लोग चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

और आसमान भी नजर आ रहा--

नीचे बहोत सी कुर्सियां और टेबल लगे हुए हैं।

पीछे आसमान नजर आ रहा है।

यहाँ पर मुझे हरे भरे--

जो कि हवा भरा दिखाई दे रहा है।

वहां पर मुझे बड़ी-बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही--